यहां पे बहुत सारा कपड़ा रखे हुए हैं जो की रंग बिरंगे हैं।

भी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पानी भी दिखाई दे रहा है जो की नीला कलर का है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है जो कि नीला कलर का है।

पीछे दीवाल भी दिखाई दे रहा है जिस पे लाल कलर का पेंट किया गया है।

पीछे कपड़ा भी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

यहां पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में बोर्ड भी लगाया हुआ है जो की ब्लू कलर का है।

वो कुछ लिखा हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है।

स्कूटी भी दिखाई दे रहा है जिसपर आसमानी कलर का पेंट किया हुआ है ।

मशीन भी दिखाई दे रहा है जिस पे वाइट कलर का पेंट किया गया है।

यहां पे बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर दिखाई दे रहा है और एक चिड़िया भी दिखाई दे रही है जो की वाइट कलर की है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है जो कि सफेद कलर का है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

पंखा भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग की दीवाल में वायरिंग भी किया गया है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है जो कि हल्का ब्लैक और वाइट कलर का है।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

सभी लोगों अलग अलग कलर के रंग बिरंग कपड़े पहने हुए हैं।

दीवार में कुछ साटा हुआ भी है।

गमले में पौधे भी लगाए हुए हैं जो की हरे कलर के हैं।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

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है यहां पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जोकि ब्लू कलर का है उसपे व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ भी है।

और उसके आदमी के चेहरे में वाइट कलर का कुछ लगा हुआ भी है।

कुर्सी लाल कलर का है और टेबुल भी लगाया हुआ है।

नीचे जमीन भी दिखाई दे रहा है जिसपे टाईल्स लगाया हुआ है।

दिवाल में पीछे बोर्ड भी लगाया हुआ है।

दरवाजा में अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई गए हैं जो की रंग बिरंगी हैं।

तार भी दिखाई दे रहा है और खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सी भी दिखाई दे रहा है जिस पर गद्दा रखा हुआ है कुर्सी में पेंट भी किया हुआ है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है जो कि नीले कलर का है।

झंडा भी दिखाई दे रहा है और गाड़ी भी लगाया हुआ है।